यह चित्र किसी बड़े से मैदान का है।

जिसमें बहोत सारे मोर की पंखुड़ियां नजर आ रही हैं।

यहां पर अनेक अनेक प्रकार के बहोत से फ्लावर पॉट्स नजर आ रहे हैं।

यहां पर एक कॉफी मशीन कॉफी कप तथा पानी की बॉटल भी नजर आ रही है।

इस चित्र में एक खेत तथा एक बड़ा सा हॉल नजर आ रहा है।

यहां पर एक बहोत बड़ी सी आर्च पैलेस भी नजर आ रही है।

बहोत सारे लोहे के पिलर्स तथा जीने बने हुए हैं।

यह चित्र लीची के फलों का है।

यहां पर बहुत सारे लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

और यहां पर बहुत सारी लाइट भी नजर आ रही है।

तथा बस स्टैंड में बहुत सारी लाइट्स भी नजर आ रही हैं।

यहां पर बैकग्राउंड में बहोत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

यह चित्र किसी सैलून का है जहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं।

यहां पर एक साइकल तथा एक ड्रम और बहोत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

यह चित्र किसी मिष्ठान भंडार की है।

जहां पर बहोत सारे लोग खड़े हुये नजर आ रहे हैं तथा कुछ लोग बैठे हुये नजर आ रहे--